और रेस्टोरेंट की और दो लोग आ रहे हैं।

चर्च के बाहर सीढ़ियों पे बहोत सारे फादर वाइट कपड़ा पहने हुए खड़े हैं।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

यहाँ पे लेडीज़ कपड़े टंगे हुए हैं जैसी की लेगी --

इस बिल्डिंग पे फर्स्ट फ्लोर पे लिखा है हिमालया ट्रांसपोर्ट कंपनी ।

यहाँ पे एक आदमी येलो कलर का कुर्ता पहने हुए खेत में से चल रहा है।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

नदी के किनारे सीढ़ियों पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

मुझे इस चित्र में दिख रहा है कि ये एक ऑफिस है।

वही दो लड़के जाते हुए दिख रहे हैं और एक आदमी खड़ा है।

दुकान है इस दुकान पे लाल बोर्ड लगा हुआ--

वही एक पर्वत के बीच में से झरना बह रहा है।

डेयरी के ऊपर लिखा है श्री डेयरी दूध एक दूध उत्पादक--

और इस डेयरी के आगे एक पिले फूलों माला राखी हुई हैं।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

जहां पे दो आदमी ग्रे कलर की गाड़ी को वॉश कर रहे हैं।